मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है हरे कलर का और मुझे सफेद बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और मुझे झंझरी भी दिखाई दे रही है ।

और मुझे सड़क दिखाई दे रही है मुझे बाइक भी दिखाई दे रही है मुझे विंडो भी--

मुझे एक कार दिखाई दे रही है सफेद कलर की और मुझे कांच की विंडो --

मुझे एक गुरुजी दिखाई दे रहे हैं पूजा करते हुए--

एक मुझे फोटो की भी दुकान दिखाई दे रही है और मुझे एक--

बाइक दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारी--

बहुत सारी मिठाइयां दिखाई दे रही हैं और विंडो दिखाई दे रही है कांच के बंगले दिखाई--